इस ट्यूटोरियल में हम ब्लेंडर 259 के लिए हार्डवेयर विशिष्टताओं और आवश्यकताओँ पर ध्यान देंगे
यह स्क्रिप्ट देवेन्द्र कैरवान द्वारा अनुवादित है
और आवाज जया मिश्रा द्वारा दी गई है
पहले हम देखेंगे कि ब्लेंडर की ऑफिसियल वेबसाइट हार्डवेयर आवश्यकताओँ के बारे में क्या कहती है
अपना इंटरनेट ब्राउजर खोलें
मैं फायरफॉक्स 309 का उपयोग कर रहा हूँ
एड्रैस बार में wwwblenderorg टाइप करें और Enter की दबाएँ
यह आपको ब्लेंडर की ऑफिसल वेबसाइट पर ले जायेगा
प्रदर्शन की आसानी के लिए पहले सिस्टम रिक्वायरमेंट पेज पहले से ही लोड किया है
ब्लेंडर फ्री और ओपन सोर्स है
ब्लेंडर 259 लगभग सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर काम करता है
इस ट्यूटोरियल के लिए मैं विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कर रहा हूँ
ब्लेंडर के विभिन्न भाग कंप्यूटर हार्डवेयर के अलग अलग खंडों पर निर्भर हैं
तेज सीपीयू और अधिक राम प्रतिपादन की गति को बढ़ाने के लिए मदद कर सकते हैंजब ब्लेंडर इंटरफेस व्यूपोर्ट्स और रियल टाइम इंजन गति ग्राफिक्स कार्ड की गति से प्रभावित होती है
तेज और बड़ा हार्ड ड्राइव भी कार्य की गति बढ़ा सकता है जब बड़ी विडियो फाइल्स के साथ कार्य कर रहे हों
जैसा कि आप देख सकते हैं कि ब्लेंडर संस्था उपयोग के तीन भागों के लिए हार्डवेयर विशिष्टताएँ दिखाती है
मिनिमम गुड और प्रोडक्शन लेवल्स न्यूमत्तम अच्छा और उत्पादन स्तर

सुनिश्चित करने के लिए कि आप किसी एक निर्दिष्ट स्तर से जुड़ते हैं आपको अपने सिस्टम कंफिगर को चेक करने की आवश्यकता है
अपनी ब्राउजर विंडो को मिनिमाइज करें
कंट्रोल पनेल पर जाएँ
यहाँ सिस्टम आइकन पर डबल क्लिक करें
अतः यहाँ आप अपनी मशीन की वर्तमान विशिष्टताएँ देख सकते हैं और ब्लेंडर संस्था द्वारा प्रस्तावितों के साथ तुलना कर सकते हैं
अधिकतर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स 32 बिट या 64 बिट होते हैं
मैं 32 बिट विंडोज का उपयोग कर रहा हूँ
32 बिट और 64 बिट सीपीयू की जानकारी के संचलन के तरीके को प्रस्तुत करते हैं
विंडोज का 64 बिट वर्जन 32 बिट सिस्टम से ज्यादा प्रभावशाली और बड़ी मात्रा में राम को संचलन करता है
000459 000403 और यदि आप ब्लेंडर के लिए नये कंप्यूटर में निवेश करने की सोच रहे हैं wwwblenderguru com the ultimate गाइड टो बायिंग आ कम्प्यूटर for ब्लेंडर पर इस लेख को देखना एक अच्छा विचार होगा
यह मार्गदर्शिका आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूर्ण विवरण देती है
सीपीयू राम ग्राफिक्स कार्ड केस और हार्ड ड्राइव ब्लेंडर के लिए हार्डवेयर आवश्यकताओँ पर इस टूयटोरियल को समाप्त करता हूँ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
इस पर अधिक जानकारी इन वेबसाइट्स पर उबलब्ध है
oscariitbacइन और spoken tutorialorgnmeict इंट्रो
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल का उपयोग करके कार्यशालाएँ भी चलाता है
जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं उनको प्रमाण पत्र भी देते हैं
अधिक जानकारी के लिए कृपया इस ई मेल एड्रेस पर सम्पर्क करें contactspoken tutorialorg हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद